ये टेबल की कलर में है।

और पत्थर है नीचे में।

और ऊपर साइड में लिखा है एस_बी_आई कार्ड --

आसमान भी दिखाई दे रहे हैं और--

पीछे में वो लड़की दिखाई दे रहा है साइड में फ्लावर्स --

और येलो दुपट्टा है उसके गले में।

और छह ना सात आठ ऐसा लाइट है।

और वहां में ए सी भी दिखाई दे रहा--

ये नर्सरी है जहां में बहुत सारा फुल स्टॉक अलग अलग कलर में पॉट दिखाई दे रहे हैं।

ये जो एक सैलोन है जहां में थ्रेडिंग चल रहा है।

यहां में ऊपर बोर्ड में कुछ लिखे है छू के पेर।

एक लाइट भी है वहां में और हमें वायरस सब भी दिखाई दे रहे हैं।

और ग्रास दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर ऊपर में बोर्ड में बहुत कुछ दिख रहा है जैसे कि आर_टी_एम अर्थमूव्स और गाड़ी लोग का पिक्चर दिखाई दे रहा है।

ये दो स्कूटी दिखाई दे रहा है।

रूम में बल्ब दिखाई दे रहा है।

इसके बाद ब्लू कलर में एक गैलन दिखाई दे रहे हैं।